यहा पर एक बिल्डिंग हे बिल्डिंग के नीचे एक दुकान हे और यहा पर बहुत सारी बाइक भी हे और आदमी भी हे और बिल्डिंग के ऊपर एक पेड भी हे।

यहा पर एक बिल्डिंग हे और बिल्डिंग के ऊपर ये बांस लगे हुए हे पूरे ऊंचे तक और यहां पर दो आदमी भी खड़े हैं।